काफी लगी हुई है। यहां पे बैलून से सजे गए हैं। सभी लोग बर्थडे मानाने आ --

यहाँ पे ढ़लाई के सेंट्रिंग किया जा रहें हैं। यहाँ --

सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं और बहोत भीड़ यहाँ पे लगी है।

ये एक महजिद हैं इस महजिद मे मुस्लिम धर्म के लोग नमाज अदा करने --

यहां काफी हरा-भरा दिखाई दे रहा है यह जगह बहुत ही सुंदर --